कुछ कप उल्टा करके रखा हुआ है और कुछ कप को टांगा हुआ है।

इस दृश्य में वाशिंग मशीन और फ्रिज का दुकान का चित्र है।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

इस मैदान में कुछ बहुत चेयर भी लगा हुआ है।

है क्या अंदर बेहद खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधा लगा हुआ है जो काफी हरे भरे हैं।

लडकी भी लोग भी है और इस पार्क में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ पौधे लगा हुआ है।

इस दृश्य में एक बैंक का चित्र है जो की एस_बी_आई बैंक है।

इस दृश्य में एक मैदान का चित्र है।

एक छोटा सा घर भी है जिसका कलर व्हाइट है।

इस जिम में सीलिंग फैन भी लगा हुआ है।